सामने बहुत सारे छोटे-छोटे कबाट रखे हुए हैं कांच का कुछ बना हुआ है उस पर बहुत सारी पोस्टर लगी है।

हजाम उसका बाल बना रहे हैं सामने आईना है और बहुत सारे क्रीम वगैरह दिख रहे हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है और काउंटर पर जगह-जगह से--

पांच छे लोग चेयर पर बैठे हैं यह कुछ खाने जा रहे हैं एक लेडीज औरत अंदर है उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

देखिए यहाँ पर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है सामने दरवाजे पर कुछ चीज बनी हुई है दरवाजा लॉक है।

दुकान के बाजू में भी घर है छोटी-छोटी घास दिख रही है घर के बाजू में दरख्त भी है।

देखिए इस बड़े से पोस्टर पर कराजी चिकन लिखा हुआ है और बाजू में कुछ सिमिट का बना हुआ है।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

खींची हुई है बिल्डिंग के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

तो तीन चेयर रखी हुई है काउंटर भी रखा हुआ है काउंटर पर दो बड़े-बड़े से लाइट रखे हैं साइड में बॉक्स हो भी रखा।

देखिए ये स्कूल है सामने ब्लैक तख्त नजर आ रहा है तख्त पर कुछ लिखा हुआ है।

देखिए यहाँ पर फंके की एक-एक पत्ती--

देखिए यहाँ पर पहाड़ खोदने का काम चल रहा है बिलडोजर से गड्ढा किया जा रहा है।

बड़े बड़े पर खंबे भी पाइप के रखे हुए हैं और कुछ मशीनें --

पोस्टर पर चिकन कॉर्नर लिखा हुआ है बहुत सारी पलीटें बनी हुई है ए दुकान के पास दरख्त तो भी है।

देखिए यहाँ पर दो तीन मंजिला शायद ये स्कूल है।

दुकान में एक आदमी दिख रहा है लाइट वगैरह लटक रही है।

यहाँ पर हीरो हौंडा के बहुत सारे सामान --

देखिए ये रोड़ दिख रही है रोड़ के बाजू में घास का बना हुआ है घास के बाजू में फिर एक रोड़ है।

चावल हैं कटोरी में चम्मच है सब्जी है दाल है सब टेबल पर रखा हुआ है।

एक बड़ी सी नाव नदी के पास खड़ी है इस पर दो लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पर दरख्त भी है।

देखिए ये घर यहाँ पर कुछ छोटा सा बना हुआ है उस पर छोटा सा गुम्मद है।

दो फैन लटक रहे हैं वहाँ पर गुलदस्ता भी रखा है।

देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा बना हुआ है छत भी है।

और बहुत सारी ढेर कार है वेन है।

एक आदमी गड्ढे में झांक रहा है दो आदमी इसके पास खड़े हुए हैं।

काउंटर पर भी बहुत स पिल येलो बॉक्स है।

और काउंटर के पास दो चेयर है काउंटर पर बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है।

सामने छह गाड़ी खड़ी हुई है छोटा सा घर दिख रहा है।

पास सब पर्दे लटक रहे हैं आसपास छोटे छोटे घांस और पौधे है।

बहुत सारे कपड़े स लटके हुए हैं बहुत सारे लाइट भी लगे हुए है।

बहुत सारे पौधे लगे हुए है और बहुत ही बड़ा --

देखिए ये दुकान दिख रही है नीचे भी दो शॉपिंग है।

बहुत सारे चप्पल और शूज दुकान के अंदर दिख रहे हैं।

दो आदमी चेयर पर बैठे हैं दो हज्जाम उनकी दाढ़ी मुच्छी बना रहे हैं ।

देखिए शायद ये डे म है दो खिड़की खुली हुई है जहाँ से बहुत सारा पानी बह रहा है।

द यहाँ पर बहुत सारे दरख्त तो छोटे छोटे दिख रहे --

टेबल और चेयर रखी हुई है एक तरफ चेयर टेबल है।

हवाईजहाज में से दो तीन लोग उतर रहे है यहां पर एक आदमी एक औरत एक बच्चा खड़ा है।

देखिए इस दुकान के बाहर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए है।

बैठने वाला टेबल बिया काउंटर पर वजन करने वाला और बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

देखिए ये दो मंजिला बिल्डिंग दिख रही है।

बाहर बड़ा सा मैदान है वहाँ पर तीन सोफा बैठने वाला रखा है।

देखिए यह तीन घर दिख रही है घर के सामने कच्ची रोड है दो जगह पानी भरा हुआ है घर पे पानी की टंकी रखी हुई है।

सोफा खूबसूरत रखा हुआ है फूलों की माला से गुलदस्तों से --

ये सब सजाया हुआ है लाइट भी है।

बाटलियाँ भी बहुत सारी रखी हुई है छोटे छोटे बॉक्स भी है।

खिड़की भी नजर आ रही है दरवाजा भी है।

दरवाजे पर पर्दा दिख रहा है फैन भी लगा हुआ है लाइट भी जल रही है।

देखिए इस कमरे में दादर नजर आ रहा है एक चेयर है।

और दो तीन बड़ी बड़ी मशीन है फैन भी लगा हुआ है।

भी दिख रही है और यहाँ पर कुछ बना भी है।

देखिए अंदर रूम में टेबल कुर्सी बहुत सारी रखी हुई है।

और बहुत सारे गुब्बारों से सजा हुआ है।

देखिए यहाँ टेबल पर एक कम्पूटर रखा हुआ है कम्पूटर के सामने एक चेयर है।